एक बोहोत बड़ा एक भगवान का मूर्ति बना हुआ और उस सबके हाथ मे--

कार भी खड़ा हुआ हैंएक ट्रक भी खड़ा हुआ हैंऔर इनमे इंडियन ऑइल भी लिखा हुआ है।